यहाँ पे दोनों गेट के बिरकाया हुआ है और आधा हुआ आधा बंद है जो एक आदमी मोटर साइकिल पे बैठे हुए है और हेलमेट लगा के देख रहे है ।

कोई प्रखण्ड सा चंचल कार्य एक गेट खुला है और एक गेट बंद है और एक आदमी अंदर गया है एक मोटर साइकिल पे दु आदमी है। बहुत अच्छा लग रहा है।

आ किराना स्टोर है जो बत्तीस जी_बी रेम देते है जो इसके बगल में डालमिया का प्रचार किया हुआ है ।

ये बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे घूमने मे भी मजा आएगा और ये गोल कार कुछ है।

जो डायरी है जो गजब का है इसमे सब कुछ दूध पनीर दही इत्यादि बहुत सामान मिलता है--